टेबल पड़ी हे ब्लैक कलर की चेयर हैकॉफ़ी की ब्रांडिंग हो रही है दीवाल पे प्रिंटिंग हो रही है।

व्हाइट वॉल है टेबल है ब्लैक कलर की चेयर है।